देखने में बहोत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे बहोत से लोग आए हुए है बाइक है यहाँ पे कपड़े का दुकान पे--

चित्र बना हुआ हैं और यहाँ पे बहोत से लोग हैं जो इसे सजा रहे हैं अभी भी--

यह एक हॉल हैं और यहाँ पे चार लड़कियाँ हैं जो कि डांस क्लास की प्रैक्टिस कर रही हैं जो बहोत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हैं और यहाँ पे बहोत अच्छी एक लाइट भी हैं।

ये बहोत सुंदर लग रहा हैं देखने में यहाँ पे एक फैन भी हैं जो कि चल रहा हैं सामने एक कुर्सी रखी हैं और देखने में बहोत अच्छा हैं।

मंदिर के पीछे बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं--

लाइटे लगाई गई है। बड़े-बड़े लाइटे लगाए है यहाँ पे बड़े-बड़े फूलो से इसे सजाया गया है और बहोत ही सोफे लगाए गए हैं।

यह एक बड़ा सा नदी हैं और सामने बड़ा सा चट्टान जैसा पत्थर कुछ दिखाई दे रहा हैं नदी का पानी--

नदी का पानी बहोत ही अच्छा है बहोत ही साफ़ है बहोत अच्छा लग रहा है देखने में--

यह एक बस स्टैंड हैं यहाँ पे कई लड़किया हैं एक स्कूटी खड़ी हैं और बहोत ज्यादा यहाँ पे बस भी खड़ी हैं।